फिर पीछे घर दिख रहे है जो आसमानी कलर उसपे दो टंकिया वाइट कलर का है फिर एक गाड़ी दिख रहा है वाइट कलर का है।

इस जगह-जगह कैमरे लगे हुए है जो व्हाइट कलर के है फिर छज्जा है जो खुला हुआ है।

चारों तरफ पार्चील है जो बॉउंड्री जैसा है ऊपर में --

फिर गमले भी दिखाई दे रहे है। दो आदमी भी दिखाई दे रहा है।

ये इमेज मे मुझे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जो ऊपर मे बैनर लगा है फॉउंडेशन लिखा हुआ है।

ये इमेज में मुझे जंगल दिख रहे है जिसमे बड़े -बड़े घाँस उगे हुए है।

तिरंगा जिसमे टांगा जाता है ओह बना हुआ है जो दो कलर का दिखाई दे रहा है व्हाइट औ ऑरेंज साइड --

छोटे-छोटे भूरे से घाँस उगे हुए फिर एक पत्ती--

ए लड़का ऊपर में चढ़ चुका है।

फिर बहुत सारे पत्थरे दिखाई दे रहे है।

ये इमेज मे मुझे घना जंगल दिख रहा है जहां दूर--

फिर छोटे-छोटे लम्बे-लम्बे घास उगे हुए है फिर थोड़े दूर में पहाड़ दिखाई दे रहा है बहोत छोटे-छोटे--

फिर सीरी के उस पार छोटे-छोटे पत्ते है सूखे भी पत्ते है फिर सीरी के--

फिर उसके ऊपर हाउस सुकमा लिखा हुआ है जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है जो पिलरों मे घर है।

साइड मै छोटा-सा घर दिख रहा है जिसका खिड़की दिखाई दे रहा है छज्जा है ऊपर मै फिर एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

फिर जाली वाली दिवार लगी हुई है उसके पीछे घने-घने पेड़ दिखाई दे रहे है।

फिर ससरने वाला है जो येलो कलर का है ब्लू वाइट --

फिर सांप जैसा भी बना हुआ है जो ससरने वाला फिर उसके बगल में एक रूम है।

ये इमेज में मुझे एक मैरिज हॉल दिख रहा है जिसमे बहुत से लाइटे लगी हुई है।

एक छाता भी दिख रहा है जो वाइट कलर के एक आदमी है जो झुका हुआ है जो --

छोटे-छोटे पेड़ है जो झाओ के पेड़ है फिर एक बॉउंड्री है जो व्हीर्ट कलर का है।

फिर दो आ अ दो लड़के है जिसके उसके ऊपर एक लड़के चढ़ा है फिर नीचे एक आदमी हाथ फैला के खड़ा है।

ये इमेज में मुझे एक मंदील दिखाई दे रहा है जो गुलाबी और वाइट कलर में है ये मंदिर के बिच में --

फिर बहुत सारे घने -घने पेड़ दिखाई दे रहे है फिर ऐसी के मशीने दिख रही है फ्लैट में फिर टंकी भी दिखाई दे रहा हैं ब्लैक--

ये खड़ा है फिर उसके आगे एक कार है वो ब्लैक कलर का है उसके आगे एक टेक्सी है जो वाइट कलर की है फिर छज्जा है।

बैठा हुआ है जो लूंगी पेहना हुआ है जो चप्पल ब्राउन कलर का पेहना हुआ है।